हैलो गाइज आप लोग देख सकते हैं कि ये एक ए_टी_एम है जिसका- जो कि स्टेट बैंक का है।

हेलो गाइस आप लोग सब देख सकते हैं कि एक यह एक स्टेट बैंक का ए.टी.एम. है जहां पर सभी आदमी लाइन लगाए हुए है।

पैसे निकालने के लिए देखिए लेकिन एटीएम के बाहर कितना गंदगी है। एक ठेला रखा हुआ है ठेले के बगल मे एक बाइक है और उसके उस साइड मे भी एक बाइक है। आप देखिए एक लड़का जो है पैसे निकाल कर बाहर निकल रहा है। ए --

हेलो गाइस आप लोग देख सकते है। ये एक तालाब का सीन है। जहाँ पे बहुत सारी औरते छठी माई के पूजा करने की लाइन लगाई हुई है। आप लोग देख सकते हैं।

हेलो गाइस आप लोग देख सकते है कि यह एक और जिम भी बोल सकते हैं। रेस्टोरेंट भी बोल सकते हैं बट गाइस मुझे कन्फ़्यूश़्‌न्‌ है लेकिन यह मुझे जहाँ तक लग रहा है। होटल का सीन है।

गाइस आप लोग देख सकते है कि यहाँ पे शायद पैरेंट टीचर मीटिंग रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स प्लस टीचर है और सारे स्टूडेंट्स भी है जो अपने अपने कंधे पर बैग टांगे हुए हैं आप लोग देखिए आप लोग खुद देख सकते हैं।

हेल्लो गाइज आप लोग देख सकते हैं इसमें कितनी हरियाली हैं यहाँ पे कितनी हरी भरी पेड़-पोधे लगे हुए हैं और कितनी अच्छी सी यहाँ पे क्यारी बाय क्यारी जगह बनायी गयी है।

<noise> हेलो गाइस आप लोग देख सकते है कि यह एक रेस्टोरेंट का सीन है। जिसमें तीन लड़के जो बैठ के आ पिज़्ज़ा खा रहे हैं। आप लोग देखिए दो थाली है। <noise>

साइड में यलो कलर की साड़ी पहने मैम हैं। इधर साइड में रेड कलर की साड़ी पहने मैम हैं। दोनों ही बड़ी ही अ सही तरीके से देख रहीं हैं। ब - बच्चों को।

मस्त मार्केट तो बहुत ही मस्त --